अन्ना आइटम दिखाई दे रहे है साथ में एक मिनरल वाटर की--

यहां स्पोर्ट से रिलेटेड सामान मिलता होगा जहां--

यह किसी पार्क की पिक्चर दिखाई दे रही है किसी ने पर्सनल जिम बना रखा है पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे--

सेशनरी आइटम मिल रहा है जैसे जॉय का फेस वॉश कोन --

यह कोई सांगवान ऑटो वर्करस है एम_एस सांगवान ऑटो वर्कर्स ।

कार इंजन ऑयल सर्विस कार सर्विस --

इसमें एक रथ दिखाई दे रहा है।

यह किसी रसोई का चित्र है साथ ही में ऊपर पता नहीं ये क्या लगा रखा बट --

यह किसी फंक्शन का प्रो फंक्शन है जिसमें एक महिला टीचर भाषण दे रही है।

था पार्क है जो के अंदर सित है।

और वहां पर काफी सारे लोग दिखाई--

जो टीचर अलग अलग टीचर खड़े हुए हैं।